यह इमेज मे हमे एक बहुत बड़ी और बहुत उची पूरी बिल्डिंग नज़र आ रही है तथा वो बिल्डिंग के साइड मे हमे एक बहुत बड़ी--

यह इमेज हमे बहुत बड़ा पूल दिखाया जा रहा है जिसके आगे हमे एक छोटासा घर जैसा टाइप का कुछ दिख रहा है वहाँ पे हमे लाल कलर का प्रवेशद्वार--

बिल्डिंग दिख रही है जिसके आगे नीले कलर के बैनर मे पॉलीटेकनिक करके लिखा हुआ है वहाँ पे हमे काले कलर का प्रवेशद्वार नज़र आ रहा है तथा वहा पे लाल कलर का बैनर लगा हुवा है।

वहाँ पे हमे एक बहुत बड़ा बगीचा भी दिख रहा जो की हरे कलर का नजर आ रहा है।

वहाँ पे हमे बहुत से पेड़ भी लगे दिख रहे है जो की हरे रंग के नज़र आ रहे है वह बिल्डिंग के सामने हमे कुछ लोग खड़े दिख रहे है।

यह इमेज मे हमे एक बड़ी सी दुकान की फोटो दिखाई जा रही है तथा उसके साइड मे हमे एक पुराना खंडर दिख रहा है।

यह इमेज मे हमे एक बहुत बड़ा प्रवेशद्वार दिख रहा है जो की बहुत बड़ा है और वह पूरा ईटो से बना हुआ है।

ये इमेज मे हमे बहुत बड़ी हॉस्पिटल की फोटो दिख रही है जिसमे हमे कमरे मे दो नीले कलर के वेंटीलेटर दिख रहे है।

उनके ऊपर चर्च का सिमबोल बना हुआ है तथा वहाँ पे हमे बहुत से लोग खड़े दिखाई दे रहे है।

जो एक बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है वोह बिल्डिंग बहुत बड़ी तथा ऑरेंज कलर की रंगी गई है वहाँ पर हमे बहुत से लोगोन भी नज़र आ रहे है और वहाँ पे फूलों के गमले भी रखे हुए।

बाहर मे खड़ा हुआ लड़का दिख रहा है जो की वहाँ पानी देता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे हमे बहुत से पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे है जो बहुत--

वहाँ बाहर बहुत से बैनर लगे है जो की काले कलर के दिखाई दे रहे है वह बहुत बड़े है।